इस चित्र में यह यहाँ एक सैलून की दुकान है जहां पे ये जो आदमी है --

रंग बिरंगे झूले हैं और लोग यहाँ पे बोहत मजे ले रहे हैं।

इस चित्र मे पीछे एक बड़ी पहाड़ी हैं और पहाड़ी के सामने एक छोटी सी नदी --

टेबल्स है। टेबल पे टिशू पेपर्स है। कुछ सॅसेस है। टेबल्स एंड चेयर्स है। यहाॅं पे लोग पिज्जा खाने के लिए आते हैं। पिज्जा एक फेमस डिश है।

शायद ये जापान में होगा ये तो दाहिने तरफ और यानिकि आजू बाजू और यहां पे हरियाली ऊगी हुई है बीच में लोगों को चलने के लिए रखा गया है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ी मंदिर हैं। मंदिर पे सामने तीन बड़ी-बड़ी घंटियाँ हैं और आगे एक घंटी हैं। यहाँ --

पे लोग अंम् दर्शन करने आतें है अंम् और यहाॅं पे बहोत सारे जो लोग मानते है भगवान को वो दर्शन करने आ --

दर्शन करने आते हैं और वो इन्हें मानते हैं।

और यह लाइब्रेरी अ के स्टार्टिंग में एक रेड कलर का गेट है और पोस्टर पे स्वामी विवेकानंद जी का फोटो है। और यह यह एक लाइब्रेरी है।

और यहाॅं पे आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ एक बाइक है वहाॅं पे एक आदमी बैठा हुआ है और बीच में एक आदमी एक कार पे पेट्रोल डाल रहा है। कार को पेट्रोल डाल रहा है और दाहिने तरफ एक बड़ी गाड़ी जा रही है।

इस चित्र मे भी एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे दाहिने तरफ लिखा गया है की शोरूम शूकर श्रेष्ठ और यहाँ पे रेलवे स्टेशन के दाहिने तरफ एक फुटपाथ बना गया है लोगो को चलने के लिए रेलवे स्टेशन के --